की स्कूल है शायद लेकिन वल्ड स्कूल वाकई में बोहोत बढ़िया स्कूल है काफी लोग सारे दिखाई दे रहे इसके --

दोस्तों यह टाटा मोटर्स के नाम से यह कंपनी दिखाई दे रही होगी आपको जिसके अंदर यह गार्डन देखो कितना सुन्दर दिखाई दे रहा है|

दोस्तों इस स्कूल को देखकर आपको क्या लग रहा है मुझे तो यह शायद किसी घर की तरह दिखाई दे रहा है लेकिन नहीं यह स्कूल है।

और यह जो बड़े-बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और साइड पहाड़ी जैसी कोई चीज दिखाई दे रही है और आसमान देखो कितना नीला दिखाई दे रहा है। इस फोटो अंदर --

सुन्दर और अमेजिंग दिख रही है इसके अंदर जो लगी हुई है वो कितनी अच्छी दिखाई दे रही है आपको भी शायद देख के इसको मज़ा आ रहा होगा मझे भी शायद मज़ा आ रहा है।

आपको ये फोटो कैसी लग रही है? अमेज़िंग लग रही होगी।

दोस्तों इस फोटो को ज़रा ध्यान से देखिये इस फोटो के अंदर सारे कंप्यूटर सेन कंप्यूटर सेंटर तो नहीं लाइब्रेरी सी दिख रही है। कोई जिसके अंदर बच्चे बैठते बैठ के पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अब ये सारी --

आप बताना आपको ये देख के कैसा लग रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? आप --